जिमखाना के अंदर एक लड़का अपनी तस्वीर आईने में देख कर के जा रहा है ।

और ये पूल के उपर दो गाड़ियाँ और एक साइकिल जा रही हैं।

यहाँ पे एक बड़ा-सा पुल है ।

ये गणेश उत्सव में गणेश जी कि बड़ी सी प्रतिमा हैं।